एक आदमी भी दिखाई दे रहा है जो फोटो खींच रहा है।

नीचे कुछ ईंटे बिछी हुई दिखाई दे रही हैं और कुछ घास भी लगी हुई दिख रही है।

ऊपर आसमान भी दिखाई दे रहा है नीचे मिट्टी भी डली हुई है।

बीच में खंभे भी बने हुए हैं और इसमें एक डंडा भी डला हुआ दिखाई दे रहा है।

इसमें फूल की डेकोरेशन की गई है इसमें बहोत सारी लाइटें भी जलती हुई दिखाई दे रही है।

इसमें एक दुकान दिखाई दे रही है जिसमें बहुत सारी अलमारियां बनी हुई दिख रही हैं।

पीछे एक झोला टंगा हुआ दिख रहा है एक दरवाजा भी बना हुआ है और एक खिड़की भी बनी हुई दिखाई दे रही है।